पीछे पेर भी है किनारे पर है लोग।

चार पांच कुछ लोग हैं जो काम कर रहे हैं।

रेड कलर के नीचे कुछ बिछाया हुआ है।

दो-तीन बच्चा है जो सोया हुआ है इस पर।

बी एच आई एम लिखा हुआ है।

ये पीछे मछली का काट के रखा हुआ है कुछ--

ये रेड कलर ब्लैक कलर येलो कलर का राखी रखा हुआ है जो रात को बेच रहा है।

लगता है लाइब्रेरी है जिसमें बुक के रखा हुआ है।

और शीशा बीच में रखा हुआ है।

बहुत लोग हैं फूल पर खारा हुए।

लगता है ये कुछ प्लांट है।

दो लोग हैं बैठे हुए जो प्लांट में मिट्टी डाल रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं।

और साइड में बहुत सारा पोस्टर लगाया हुआ है।

और बहुत सारा पेड़ है साइड में।

इसमें रेड कलर का कुर्सी पिंक कलर का कुर्सी येलो कलर का कुर्सी है रखा हुआ।

एक लोग है बाइक लगा हुआ है।

होटल है चेयर कुर्सी रखा हुआ है रेड कलर का बैलून वाइट कलर का बैलून बहुत सारा है।

और एक वाइट कलर के पहना हुआ कोई है।

और बस लग रहा है आरटीसी लिखा हुआ है बस पर।

और कुछ लोग हैं जो साइकिल पर जा रहे हैं।

सब आगे कुछ टेबल है कुर्सी है दीवार में कुछ पेंटिंग का है।

लाइट रेड कलर के जल रहे हैं।

लगता है कार पार्किंग है आगे कुछ कारे लगा हुआ है दुगो।

और कुछ लोग बैठे हुए हैं बहुत कार्य हैं।

और कपड़ा है रेड कलर का कपड़ा वाइट कलर का कपड़ा--

दुकान में लगता है बुक वुक रखा हुआ है कुछ का--

और ऊपर कुछ ई सी ई जे लिखा है।

बहुत सारे बच्चे हैं साइड में बैठे हुए--

कुछ नंबर लिखा हुआ है एमबी नाइन थ्री ज़िरो --

और पीला पेपर पर कुछ लिखा हुआ है और टांगा हुआ है।

लगता है दुकान है जो शीशा के गेट है।

और साइड में बहुत कॉपी की तरफ रखा हुआ है।

यहां पर चेयर रखा हुआ है टेबल है।

ये रेड कलर के बैठने वाला चेयर है।

यहां पर डंबल है सत्तर कीलो कि --

लगता है यह मोल है।

थर्टी फाइव थ्री फिफ्टी --

टू टू टू फाइव --

यहां पर कैमरा कोई लिए हुए है।

इसमें गमला में कुछ फूल लगाया हुआ है आगे बड़ा-बड़ा पेर है।

और पत्थल कुछ रखा हुआ है साइड में।

ये ब्लू कलर का ड्रेस पिन है।

और कुछ नंबर लिखा हुआ है नाइन फाइव जीरो सेवेन वन टू थ्री फोर वन थ्री ।

और नंबर है --

कुछ का दुकान दिख रहा है जिसमें लाइटें ऊपर बढ़ रहे हैं ब्लैक कलर का लाइट है।

और यह सब रखा हुआ है।

कुछ बच्चे हैं जो खा रहे हैं।

ये कुछ गार्डन दिख रहा आगे कुछ लोग है एक बाइक है।

लगता है कुछ भी ग्राउंड है इसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं।

और दूर में कुछ पौधा लगाया हुआ है और स्टेज है।

और रेड कलर के झंडा पीला कलर के झंडा है।

ऊपर बी ओ ए सी एच लिखा हुआ है।

है एक ये पेपर है और दूर पर कुछ गाड़िया लगा है।

और कुछ रखा हुआ है।

लगता है कोई मैरेज हॉल है।

कुछ गमला में पौधा लगाया है।

पी ए एल ए सी ई प्लेस .

और कुछ का चित्र बनाया हुआ है।

और सब शीशा है जो शीशा में देख रहे हैं।

बैंक इसमें ऊपर लाइट लगा हुआ है।

और नीचे फ्लोर है टाइज का।

टी एस ज़िरो टू टी --

फाइव सिक्स ज़िरो कुछ ऐसे लिखा हुआ है।

और अमूल का है ये दुकान।

और दूर में कुछ पौधा दिख रहा है।

कुछ ब्लू डार्क ब्लू से लाइन --

और साइड में बहुत बड़ा बाउंड्री है जो येलो और रेड कलर का है।

तीन महिला है जो कुछ कर रहे हैं ये चूड़ी ले रहे हैं साइड --

लाल कलर का बेंच है जिस पर रखा हुआ है चूड़ी--

साइड में डेस्क है कुछ लिखा कुछ लिखा हुआ है।

दो पेट्रोल भरने वाला है बहुत सारा गाड़ी है बहुत सारा आदमी लोग है जो पेट्रोल भरा रहे हैं।

ई आर रनर एस एक्स कुछ लिखा हुआ है ऐसी तरह--

कुछ बेड है जिसमें तीन तकिया है कुछ फोटो दीवार में लगाया हुआ है।

और साइड में कुछ बोर्ड दिख रहा है ब्लैक कलर का दीवाल--

दीवाल है फोटो के ऊपर कुछ दिख रहा है बोर्ड टाइप का--

बाइक पर क्या लिखा है आर आो --

कुछ गमला आगे दिख रहा है फोटो पर कुछ हार चढ़ाया हुआ है पंखा है।

कुछ दिख रहा है कुछ दूर पर--

और यहाँ पर कुछ गेट दिख रहा है दिख रहा है।

और ऊपर पंखा सीसीटीवी कैमरा --

लिखा है कुछ लिखा है ओ आर ए एल इ --

और यहाँ पर कुछ रखा हुआ है रेक पर--

कुछ प्लेटें रखा हुआ दिख रहा है प्लेट के ऊपर कुछ--